यह एक होटल है जहां पे काफी सारी टेबल कुर्सियां रखी हुई हैं और कुछ लोग भी यहां बैठे हुए हैं कुर्सियों पे--

और अंदर काफी डिब्बों में पैक की रखी हुई है साड़ियां--

और काउंटर वगैरह कुर्सी भी रखी हुई है कलर कलर की डिजाइनदार कुर्सी काउंटर यहां पे रखे हुए हैं।

यह ऑफिस लग रहा है एक ऑफिस है जहां पे एक महिला यहां पे चेयर पे बैठी हुई है।

यहाँ पे मकान दिख रहा है जो कि बड़े-बड़े मकान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और काफी यहाँ पे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

काफी पेड़-पौधे हैं और छोटे-छोटे यहां पे प्लांट के पौधे लगे हुए हैं पार्क के चारों साइड और अच्छे से --

और यहां पे बहुत बड़ी-बड़ी बिंडो खिड़कियां बनी हुई है खिड़कियों में एक खिड़की में यहां पे पर्दा लगा हुआ है।

और ऊपर यहां पे जिम के काफी मशीनों के बैनर लगे हुए हैं यहां और काफी चेयर रखी एक चेयर रखी हुई है।

यहां पे खेत है जहां पे हरे हरे यहां पे पौधे लगे हुए हैं किसी चीज के पौधे हैं चारों तरफ यहां हरियाली ही हरियाली है।

चारों सड़प यहां पे पेड़ है हरे-हरे पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं ऊपर से तार गई हुई है।

यहां रास्ते में भी हरी-हरी घास है और दोनों साइड पे पेड़ पौधे हैं छोटे-छोटे पौधे भी--

हर कलर के यहां पे कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर लाइटिंग पंखे लगे हुए हैं कुछ लोग यहां पे बैठे हैं कुछ खड़े हैं।

यह पार्क है दोनों साइड पार्क है यहां पे और बीच से यहां पे रोड निकली हुई है।

की लाइटिंग भी बहुत बड़ी-बड़ी लगी हुई है दूसरी साइड भी एक कुर्सी दिख रही है।

यहां पे मार्केट यह मार्केट है जिसमें से दो तीन मंजिला यहां पे दुकानी दुकान बनी हुई है।

यहां पे काफी सारे पूजा वाले सामग्री वाले अ मिल रहे हैं सामान लकड़ियों के बनाए गए काफी सामान यहां पे बिक रहे हैं।

न्यू न्यू बोर्ड मेडिकल यह एक मेडिकल है पतंजलि मेडिकल है यहां पे।

मेडिकल के सामने दो तीन चार फोर व्हीलर खड़ी हुई है और गेट पास से एक महिला बैठी हुई है और अगल-बगल यहां पेड़ दिख रहे हैं छोटे-छोटे--

इसमें से काफी छोटी बड़ी डॉल गुड़ियां रखी हुई है और भी काफी आइटम है जो बच्चों का रखा हुआ बच्चों को खेलने वाला है पूरा सामान यहां पे रखा हुआ है।

यहाँ पे मीटिंग चल रही है जिसमें से एक आदमी यहाँ पे मीटिंग दे रहा है जो कि कुछ समझा रहा है सामने बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ --